जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि मुझे यहां बन दिख रही है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहां एक होटल दिख रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि मुझे यहां पुस्तक लिखा दिख रहा--